इस फुट फुटपाथ के बहोत सारी मोटरसाइकिल लगी हुई है| एक --

धारण किया हुआ है और यह तीनों बैठ के दोनो हाथो को ऊपर करके नृत्यकला की प्रस्तुति दे रहे हैं।

शेड नुमा न् शेड नुमा एक आकृति है जिसमें लोहे के पिलर से शेडल् न शेड को --

यह एक चर्च है। चर्च में एक पादरी है जो खरा है।

बगल में एक सीलिंग फैन और लाइटे लगी हुई है।

यहाँ पे टेबल पर एक प्लेट पड़ा है जो सफ़ेद रंग की है और उसमे लाइनिंग बनी है।

ये एक पेट्रोल पंप है जिसके बाहर में --

छत पे बहुत सारी लाइटे लगी हुए हैं।

मम लकड़ी का खम्बा है और बगल में एक सफ़ेद ईमारत भी है।

एक मंजिला इमारत है जो सफ़ेद रंग की है बगल में बहोत सारे पेड़-पौधे हैं।

एक बच्ची है जो बड़ा सा चार्ट पेपर में कटिंग कर रही है।

यह लीची है जो एक बड़े से स्टील के प्लेट पे रखा हुआ है।

जिसमें एक हवाई जहाज की आकृति बनाई गई है।

पर्स सही नही है इस कार के पीछे बड़ी-बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है।

इस सैलून के अंदर में बहोत सारी लाइटें लगी हुई है अंदर में कुर्सियाँ हैं।

बाहर भी कुछ लड़कियाँ हैं और सामने एक औरत है जो खड़ी है एक औरत है जो चेयर पे बैठी है।

पीछे इसके शेड लगा हुआ है सामने में एक --

और बहोत सारी कोल्ड-ड्रिंक की बोतलें इस फ्रिज में रखी हुई है।

यहाँ पे एक शादी का समाहरो चल रहा है। एक टू सीटर सोफा सेट है जिसपे --

यह एक पार्क है इस पार्क में एक फुटपाथ भी है फुटपाथ के दूसरे तरफ पर पीले रंग के --

एक बर्तन धोने वाला जूना है जो हैंगिंग किया हुआ है।

अंदर सामने दो महिलायें दिख रही है और जो इस पत्थर नुमा आकृति के अंदर है।

पीछे एक ईमारत है जो अभी अंडर कंट्रक्शन है।

सामने मोटरसाइकिल की एक रौ लगी हुई है जिसमें एक रौ से मोटरसाइकिल लगी हुई है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है दो।